इसमें मुझे एक कार खड़ी दिख रही है।

इसमें मुझे दो लोग खड़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे ईंटें की दिवारे दिख रही हैं।

इसमें मुझे टेबल कुर्सियां दिख रही हैं।

इससे मैं मुझे एक हॉस्पिटल रुम दिख रहा है।